एक कूड़ा वैन है जो कूड़ा उठाकर घरों के आगे से ग्राउंड तक जाती है और इसको --

यहाँ पे एक रेढ़ी दिखाई दे रही है जिस जो जिसमें बोर्ड लगा रखा जय माता दी वैष्णो देवी का।

इस फ़ोटो में हमें एक सड़क दिखाई दे रही है जो बहोत ही हरियाली से घिरी --

फोटो में हम एक अनंद हॉस्पिटल देख सकते हैं।

बहोत बड़े-बड़े दिखाई दिखे है और बहोत बड़े --